यहाँ पर अ कुछ मशीने भी लगी हुई है जिसकी मदद से कसरत की जाती है शरीर को व्यायाम किया करवाया जाता है।